पीला कलर की पहनी हुई है उसमें छाप भी है।

दो बालकोनी है दो-दो बालकोनी है सब पे।

अंद बाहर से अशोक का दो पौधा लगा हुआ है।

की तैयारी हो रही है वहां पे बहुत अच्छे से सजी हुई है।

और तीन दो पर्दे दो कलर का पर्दे लगी हुई है जिसमें नीला--

ईहां पे वर्कर है।

बहुत खूबसूरत लग रहे हैं।

उसमें एक सड़क भी है।

उसके पीछे घर है दो मंजिल की।

एक ग्राउंड में एक गोल घर जैसा दिखाई दे रहा है वहां पे एक--

दुकान के नाम ग्रीन मिस इंडिया पीवीटी एलटीडी है।

और उसके बगल में दो पौधे हैं जो--

खिड़की में ग्रिल लग एक चेयर है इसमें।

जिसमें शैंपू फेस वाश जॉनसन बेबी पाउडर और साबुन --

में ऑक्सीजन गैस है ऊपर में पंखा लगी हुई है।

एक जगरेक्सिक पार्क है जिसमें--

तीन आदमी हैं एक लड़की है जो जींस शॉर्ट पहनी हुई है ए --

ए इस रु वीडियो में सरक है सरक के किनारे--

तीन मंजिल का घर है।

उस पे एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है आगे से--

जो योगा कर रहे हैं।

एक नाई की दुकान है जिसमें--

एक आदमी गड़ी से उतर रहे हैं।

एक इश्कूल है जिसके पास गेट पर--

अंदर में एक वाइट और रेड कलर की--

अगले फ्राउट पे भगवान का मूर्ति लगी हुई है।

ऊपर के छतदार में पंखे--

चार मंजिल की है और--

कह कपड़े रखे हुए हैं प्लक चार्जर में लगे हुए वाटर बोतल है।

हैब एक बैग रखी हुई है।

जो बैलून से सजे हुए हैं।

बुलू बैलून एक आदमी ने सजाया है उस पे सोफे लगे हुए हैं।

यूसीसी की गेट लगी हुई है--

एक शॉप की दुकान है जिसमें मॉल है--

इस पिक्चर में जिसमें इसमें जैकेट शूटर और एक दो आदमी खरे हैं।

बिक रही है और एक आदमी हाथ में हेमलेट लिए हुए है।

एक पार्क है इस वीडियो में जिसमें बच्चे सब--

खेल रहे हैं उसमें एक आदमी--

फूल की खेती होती है वो फूल--

जेंस लेडीज मीटिंग में है।

ऊहा पे दो लड़के भी खड़े हैं।

हरा कलर का पोलोथीन है।

एक द शॉप है दुकान है जिसमें पिज़्जा डेट --

तीन चार बाइक लगे हुए हैं वहां पे एक लड़के खड़े हैं।

वहां पे येक पौधा भी लगा हुआ है।

लैब पे काम कर रहा है जिसका सिर दिख--

पिक्चर में उसमें आदमी लोग--

एक हॉल है जिसमें--

कंपटीशन में कंपटीशन शीख रहे हैं।

झिल्लीदार विंडो लगी हुई है छोटे से--

उसमें पीली बॉल्ब भी पड़ रही है।

उनके पीछे दो--

बुक लाइब्रेरी है जिश में--

दो बच्चे हैं एक लेडीश ने--

जेक बच्चों का फ्रॉग दिखाई दे रहा है श्यूटर है बहुत--